नमस्कार gchempaint में formation of molecules के tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न सीखेंगे
compounds के structure को जोड़ना और रूपांतर करना
वर्तमान अवयव में बदलाव
alkyl alkyl समूह जोड़ना
carbon chain को जोड़ना और रुपांतर करना
यहाँ मैं उपयोग कर रही हूँ ubuntu लिनक्स os version 1204 और gchempaint version 01210
इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको gchempaint केमिकल स्ट्रक्चर एडिटर का ज्ञान होना चाहिए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
यहाँ propane butane और heptane के structures के लिए slide है
मैंने slide में प्रदर्शित propane और butane के structures के साथ एक नयी gchempaint application खोली है
अब butane में terminal carbon परमाणुओं को chlorine परमाणु से बदलते हैं
इसके लिए मैं periodic table combo periodic table combo button का उपयोग करुँगी
current element dropdown arrow button पर click करें
इस button को periodic table combo button कहते हैं
सन्निहित modern periodic table देखें
table से cl पर click करें
tool box में cl देखें
add or modify an atom tool पर click करें
इनको clorine परमाणुओं से बदलने के लिए terminal परमाणुओं पर click करें
प्राप्त नया structure 12dichloroethane है
structure के नीचे इसका name लिखें
add or modify a text tool पर click करें
text tool का property पेज खुलता है
structure के नीचे display area पर click करें
आप green box में बंद टिमटिमाता cursor देख सकते हैं
box में 12dichloroethane type करें
text tool property पेज को बंद करने के लिए select one or more objects tool पर click करें
propane structure में केंद्रीय carbon परमाणु को oxygen परमाणु से बदलें
cursor को propane structure के केंद्रीय परमाणु के पास रखें
capital o दबाएं
o और os के साथ एक menu खुलता है
o सेलेक्ट करेंकार्बन और हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन परमाणु से बदलेंगे
नया प्राप्त structure डाईमिथाइलईथर dimethylether है
अब structure के नीचे इसका name लिखें
add or modify a text tool पर click करें
structure के नीचे display area पर click करें
box में डाईमिथाइलईथर type करें
अब file सेव करें
toolbar पर save the current file icon पर click करें
save as dialog box खुलता है
file का name क्लोरोईथेनether chloroethaneether enter करें
सेव button पर click करें
window को बंद करने के लिए close button पर click करें
यहाँ एक नियत कार्य है
ethane और पैंटेन के structures बनायें
ethane के एक carbon परमाणु को br से बदलें
पैंटेन के terminal carbon परमाणुओं को i से बदलें
आपका पूर्ण नियत कार्य इस तरह दिखना चाहिए
अब मैं alkyl समूहों के बारे में समझाउंगी
alkyl समूह एल्केन का हिस्सा हैं
उदाहरणस्वरूप methyl ch3 methane ch4 का हिस्सा है
alkyl समूह के क्रमागत सदस्य ch2 समूह से भिन्न होते हैं
alkyl समूह के homologues में निम्न सम्मिलित होते हैं
methyl methyl ch3
ethyl ethyl c2h5
propyl propyl c3h7
ब्यूटाइल butyl c4h9 और इत्यादि
मैंने heptane structure के साथ एक नयी gchempaint application खोली है
अब chain दर्शाउंगी कि carbon chain की स्थितियों को कैसे अंकित करें
अंकन chain की स्थितियों को पहचानने में मदद करता है
add or modify a text tool पर click करें
display area पर पहली chain की स्थिति के पास click करें
हरे box में 1 enter करें
आगे दूसरी chain की स्थिति के पास click करें
box में 2 enter करें
इसी तरह chain chain की अन्य स्थितियों को भी अंकित करुँगी जैसे 3456 और 7
अब alkyl समूह उपयोग करके heptane की भिन्नभिन्न स्थितियों पर शाखाएं बनायें
add तीसरी स्थिति पर एक methyl समूह जोड़ें
add a bond or change the multiplicity of existing one tool पर click करें
स्थिति पर click करें
परमाणुओं में बदलाव देखें
add पाँचवी स्थिति पर एक ethyl समूह जोड़ें
add a chain tool पर click करें
स्थिति पर click करें
आगे मैं सारी स्थितियों पर परमाणु प्रदर्शित करुँगी
स्थिति पर right click करें
एक menu खुलता है
atom atom select करें और फिर display symbol पर click करें
इसी तरह मैं अन्य स्थितियों पर परमाणु प्रदर्शित करुँगी
अब देखते हैं कि एक स्थिति पर हम कितनी बार शाखा बना सकते हैं
add a bond or change the multiplicity of existing one tool पर click करें
चौथी स्थिति पर click करें
दोबारा click करें
carbon chain में शाखा बनना देखें
तीसरी बार click करके देखें
हम शाखाएं नहीं देख पाते हैं
ध्यान दें कि प्रत्येक स्थिति में शाखा बनाना केवल दो बार ही संभव है
ऐसा इसलिए है क्योंकि यह carbon की tetra valency संतुष्ट करता है
file सेव करने के लिए ctrl + s दबाएं
save as dialog box खुलता है
file का name alkyl groups enter करें
सेव button पर click करें
अब सारांशित करते हैं कि हमने क्या सीखा
इस tutorial में हमने निम्न सीखा
compounds के structure को जोड़ना और रूपांतर करना
वर्तमान अवयव बदलना
alkyl समूहों जोड़ना
carbon chain जोड़ना और रूपांतर करना
एक नियत कार्य की तरह octane structure बनायें
chain की चौथी और पाँचवीं स्थितियों पर propyl और ब्यूटाइल समूह जोड़ें
आपका पूर्ण नियत कार्य इस तरह दिखना चाहिए
इस url पर उपलब्ध video देखें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
spoken tutorial project team spoken tutorials का उपयोग करके कार्यशालाएँ चलाती है